यहाँ पे मार्केट है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है एक नील पीला कलर का पोस्टर और यहाँ पे बोहुत से बिक रहे हैं आलू बैंगन खीरा --

यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है जो कि बोहत गेस्ट लोग आए हैं टीचर भी आये हैं और भी बोहत से बच्चे देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे जो कि बना हुआ है बिल्डिंग जो कि भाइट कलर में है और यहाँ पे पेड़ भी हैं पीछे साइड नीचे घास भी है।

यहाँ पे भाइट कलर का दिवार है और यहाँ शायद बगल में मंदिर है। यहाँ पे एक फूल का पेड़ भी है और एक पेड़ है। यहाँ पर दरवाजा ब्लैक कलर में है। अंदर के साइड बोहत अच्छा दृश्य है और गेट पे एक कमीज है।